इस फोटो में एक स्टेज दिख रहा है।

कबर्ड में ताले लगे हुए हैं।

छोटे छोटे घर नजर आ रहे है।

इस फोटो में एक बड़ा घर टाइप बना हुआ दिख रहा है।

दो तीन गाड़ी लगी हुई दिख रही है।

ऊपर आसमान भी दिख रहा है।

घर के ऊपर दो टायर --

कार्टून और झाडू दिख रहे हैं।

इस फोटो में लकड़ी के बनाए हुए--

बगल में एक बोरा दिख रहा है।

हैंड वॉश करने वाला दिख रहा है।

उसके पीछे एक दुकान दिख रहा है।

बकरियों का कलर व्हाइट और ब्राउन है।

अंदर जूता-चप्पल रखे हुए दिख रहे हैं।

अपना हार्डवेयर स्टोर लिखा हुआ दिख रहा है।

इस फोटो में एक बिल्डिंग दिख रहा है।

ऊपर सोलर प्लेट लगे हुए दिख रहे हैं।

पीछे स्टैचू रखा हुआ नजर आ रहा है।

यह फोटो एक दुकान का है।

नीचे कार्टून रखा हुआ नजर आ रहा है।

टेबल का कलर ग्रीन रेड और येलो है।

बैलून का कलर ऑरेंज और ब्लू है।

जिसके ऊपर एल_आई_सी लिखा हुआ है।

इस फोटो में सात कुर्सियां लगी हुई दिख रही है।

उसके पीछे चार लोग भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

नीचे एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है।

विद्यालय के अंदर बस लगी हुई दिख रही है।

बगल में दो साइकल लगी हुई है।

इस फोटो में एक कार लगी हुई नजर आ रही है।